हमारे प्रकृति को सोन्दरिया सौंदर्य प्रदान करती है।

सो गाइस आप देख सकते है यह बहोत बड़ी होटल के तरह दिखाई दे रहा है इसके बाजु में कपड़े की शॉप है जो की यह शॉप --